यहां पर एक गुफा जैसा डैम दिख रहा है। काफी सुन्दर अच्छा और काफी प्यारा लग रहा है। यहां पर पानी भी काफी सुन्दर और अच्छा लग रहा है।

यहाँ आपको एक मशीन दिख रही है। काफी सुन्दर मशीन है। और यहां पर मशीन के ऊपर काफी हैवी मशीन दिख रही है। ऊपर आपको यहां टीन लगी हुई दिख रही है।

नीला आसमान काफी अच्छा नीला आसमान दिख रहा है और यहां पर जो बिल्डिंग बनी हुई आपको दिख रही है

मूर्ति काफी अच्छी और सुंदर मूर्ति दिख रही है नीचे यहां पर आपको कुछ मैटर लगी हुई दिख रही है लाल कलर की काफी अच्छी सुंदर वह पर आपको एक दीवार दिख रही है कुछ पेड़ पौधे की फोटो भी लगी हुई दिख रही है

ऊपर नीला आसमान काफी सुन्दर और अच्छा आसमान दिख रहा है यहाँ पर कुछ पेड़ पौधे पत्तियाँ है काफी सुन्दर और अच्छी पत्तियाँ है वो भी पत्तियाँ दिख रही है ऊपर नीला आसमानी काफी अच्छा दिख रहा है |

दुर्लभ का कॉफी क्लब काफी अच्छा लिखा हुआ दिख रहा है नीचे हर-भाभी घास है ऊपर अच्छा है नीला आसमान देखकर--